और एक खिड़की लगी हुई है जिसमें कर्टन्स लगे हुए हैं एक आदमी चेयर पे बैठा हुआ है और साइड में लोग खड़े हुए हैं।

ये दिन का टाइम है और यहाँ पे बहुत सारा--

बाइक चल रही है और कार खड़ी हुई है एक और ई-रिक्शा खड़ा हुआ है जिसमें एक लेडीज बैठी हुई है।